ये बाइक लगा हुआ है दो पीछे पहाड़ दिख रहा है कुछ आदमी जंगल ये सब दिख रहे है रोड के साइड में।

ये किसी मॉल वी टू मॉल्स का ये फोटो है यहां पे कस्टमर वगैरा दिख रहे हैं एक हाथ में हेलमेट लिए हुए काफी सारे जैकेट वगैरा टंगे हुए है अ मॉल बहुत अच्छा दिख रहा है।

यूनियन बैंक के ए_टी_म और अ ए_टी_म के सामने फूल लगा हुआ है फूल का माला लगा हुआ है और एक ल बच्चे जो है लड़के दिख रहे--